इस तस्वीर में मुझे दो हरे भरे पेड़ नजर आ रहे--

और मुझे एक सड़क नज़र आ रही है और कुछ कार्स दिख रही --

एक बेड पे लेटा है और एक बेड पे एक लेडी बैठी हुई है।

बाउंड्री के बाहर मुझे एक घर भी नज़र आ रहा है।

पास में मुझे कुछ बच्चों के झूले भी दिखाई दे रहे हैं।

इस बैंक के ऊपर एक बोर्ड लगा है जिसमें स्टेट बैंक ए_टी_एम नजर आ रहा है।

यहां पे मुझे पुल नजर आ रहा है जिसके नीचे बड़े बड़े पिलर लगे हुए हैं एक--

इस तस्वीर में मुझे एक बिल्डिंग नजर आ रही है और कुछ घर दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक बिल्डिंग नजर आ रही है जो एक चर्च की है।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

सीढ़ियां लगी हुई हैं यहां पे मुझे तीन बेंचेज भी स्टेज पे नजर आ रहे हैं।